पेड़ बा घास बा देखत के निक लागता मन मोही लेता। किनारे-किनारे पेड़ बा आदमियो बाने लो। खूब भारी-भारी मकान बा। देखत के निक लागत --

घर बा। नदी बा लोहा बा। पोल बा। देखत की निक लागत बा। लाइट बारल गईल बा। किनारे किनारे घर बा पेड़ बा। देखत के निक लागता।

तार बा देखत के निक लागत ऊपर आसमान बा पानी बा लोहा के सड़क बनल बा देखत के निक लागता नी --

उंकर नीचवा घर बा देखत में नीक लागता खूब सुंदर लागता।

पोल बा नीक लागत बा देखत के सड़क बा किनरवा किनरवा पानी बा पेड़ बा हरियर हरियर नीक लागता ऊपरा बादल बा।